मुझे कुछ टेबल भी दिख रही है और कुछ स्टूल भी दिख रहे हैं।

कुछ बोरियां भी दिख रही है और कुछ पिंजरे भी दिख रहे हैं मुझे लाइट भी दिख रही है।

और एक तालाब भी दिख रहा है।

रंग बिरंगी लाइट भी दिख रही है मुझे कुछ गाड़ियां भी दिख रही है।

मुझे एक बैंक दिख रही है बैंक में कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

होटल दिख रही है। होटल का मुझे एक ऑनर भी दिख रहा है।

और मुझे कुछ टब भी दिख रहा है मुझे कुछ कीचड़ भी दिख रहा है।

मुझे एक छोटा सा घर भी दिख रहा है कुछ लोग भी दिख रहे हैं।

मुझे कुछ माकान भी दिख रहे हैं और मुझे कुछ प्लो कवर भी दिख रहे हैं।

मुझे एक रूम दिख रहा है रूम में एक टेबल दिख रही--

और एक लाइट का खंभा भी दिख रहा है और मुझे कुछ पेड़ भी दिख रहे--